अ कमरे की पोताई का कलर ये वाइट है पर्दा पिक और वाइट कलर का लगा हुआ है एक पर्दा पर्पल पिंक और वाइट कलर कलर का लगा है ऊपर वाइट पंखा --